सभी लोगों ने गेरुवे रंग के ड्रेसेस पहन रखे हैं। सामने एक बोहोत बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ माइक भी रखी हुई है। जिस पे कुछ लोग बोलते हुए नजर आ रहे है। ऊपर की छत सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है और नीचे --

ऊपर लाइट की तारे लगी हुई देखी जा सकती है। सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ऊपर नीला आकाश है।

यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है। मूर्ति को अच्छे तरीके से कपड़े से पहना के बैठाया गया है। यह --

गुब्बारे लगाए गए हैं। कुछ गुब्बारे पीले दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं। ऊपर सफेद रंग की लाइटे लगी हुई हैं। यह देखने में बोहोत --

यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही है जो कि काले रंग की है। यह एक पार्किंग की स्थान --

और वो फोटो क्रिकेट खेल रहे है। दरअसल इस गेम को फूटबॉल बोलते है।

और उसने अपने हाथों मे एक किताब को ले रखा है पीछे एक बड़ी से लियब्ररी दिखाई दे रही है जिसमे बोहोत सारे खाने बनाए गए --

और यह देखने मे बोहोत ही लग अच्छी लग रही है। ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है। अगल -बगल में बोहोत सारी लाइटें लगी हुई है।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

स्कूटर का कलर ब्लैक कलर मे दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति ने किसी पंडाल के ऊपर बैठा हुआ है और कुछ लाइटे भी लागि हुई दिखाई दे रही --

अगल-बगल में कुछ पेड़ भी देखे जा सकते हैं सामने एक लाइट का खम्बा भी --

यहाँ पर बोहोत सारे लोगों को एक साथ देखा जा सकता है। शायद यहाँ पे कोई च् सरकारी गोरमेंट काम वगैरह हो रहा है।

सीढ़ियां बनाई गई हैं और इसपे एक बड़ा सा अच्छा सा गुंबद भी बनाया गया है।

दिखाई दे रही हैं और कुछ छोटे छोटे कटे हुए लकड़ी के पेड़ पौधे भी रखे गए हैं।